और पूल के ऊपर टावर लगा हुआ है।

मेडिकल स्टोर में बहुत सारा काउंटर पे दवाई रखा हुआ है।

एक लेडिस और एक जेंस बैग को लेके जा रहे है एक स्कॉर्पियो भी लगा है।